देख सकते है एक टेम्पो खड़ा वड़ा है टेम्पो का रंग भी इतना अच्छा दिख रहे है अउ एक आदमी भी है दो आदमी है अउ बसे दिख रहे है।

लोग फोटो ओटो खिंचवा रहे हैं।

शादी एक लोग का शादी हो रहा है बहुत आदमी है बहुत सारा आदमी और एक ठो दूल्हा को बइठाया गया है उधर घर वर भी है बहुत सुंदर लाइट व्इट भी दिख रहा है।

नीम का पेड़ बहुत अच्छा अच्छा है बहुत सारा कलर सफेद कलर है हरा-हरा पत्ता है आदमी लोग है साइकिल में--

बहुत अच्छा दिख रहा है फूल-वूल भी सजाया गया है अ कुर्सी टेबल मन में चुन्दरी - वुन्दरी बंधाया गया है ऊपर फूल - वूल भी दिख रहा है चाँद-वाँद का भी दिख रहा है।